अलमारी में यहाँ पे एक वॉच लगी हुई है वॉच का कलर क्रीम कलर का है।

इस तस्वीर में हमे घर दिखाया है घर का कलर वाइट और ब्लू है यहाँ पे लाइन दिखाई गयी है लाइन में लग के कुछ कार्य कर रहे हैं।

और इसने कैप लगाई हुई है कार के सामने यहाँ पे हमे ब्लू कलर की चद्दर दिखाई दे रही है साइड मे एक बोर्ड लगा हुआ है जो रेड कलर का--

इस तस्वीर में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं ये एक चेयर पर बैठे हुए हैं जिस का कलर रेड है और गोल्डन है साइड में एक महिला दिखाई दे रही है जो स्पीच दे रही है।